हो सकता है यह किसी पुस्तकालय का क्षेत्र न हो कर ऑफिस अर्थात कार्यालय का क्षेत्र हो क्योंकि यहाँ पर ढ़ेर सारे ऑफिस रखे गये है लेकिन एक एक टेबल भी रखा गया है जिससे समझ में आ रहा है सम्भवतः या पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी ही है।

यह बी_एच्_यू के प्रबंध शास्त्र संकाय है अर्थात इसको अंग्रेजी में फैकल्टी ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज भी कहा जाता है।

यह बनारस का अतिप्रसिद्ध गोदोलिया मार्किट है। गोदोलिया मार्केट पर ये चौराहे का मार्केट है चौराहे का अ तात्पर्य चार राह जहाँ पर जाते --

यह एक व्यायामशाला है। व्यायामशाला को अंग्रेज़ी में जिम कहते है ।जिम में ढेर सारे यहाँ पर चीजें लगी हुई हैजिस पर लोग अपने--